बहुत हरा-हरा जंगल है जंगल है। ।

पीछे काला जैसा कौन चीज है देखने मे नाच रहलो है।

कोट उट है डिब्बा उब्बा लाओ।

गुटका वुटका पीछे जंगल है गाछ उच्च बादल है ऊपर में।

बहुत जहा बहुत आदमी खाडा है सीढ़ी ऊपर घर हैं।

घर है घर के पीछे जंगल वुंगल है खिड़की विडकी है और कोन कोन मशीन वशिन है ये सब रखल।

बगल में छेना है सब और भी खिड़की है।

काली माई है काली माई के हाथ में एगो हसुआ हाओ दूसरा में बड़का ऐसा माला है और हाथ में कोंचिज है जो--

बैठे उठे वाला इ है घेरल है टाइल्स उल्स लागल है उधर बगल में।

सब आदमी साफ सुथरा करेले जग--